मंदिर दिख रहा है जिसमे ठाकुर जी का मंदिर और बहोत बेहतरीन मंदिर है बहोत शानदार दिख रहा है।

जो सारे बहोत सारे खिड़कियां दिख रही है।